पीछे बहुत बड़ा-सा घर नज़र आ रहा है घर के आगे बाउंड्री वॉल है| बाउंड्री वॉल पे एम.जी.एम.आई.टी. अ लिखा हुआ बहुत बड़ा-बड़ा सा नजर आ रहा है।

यह एक रिसेप्शन का रिसेप्शन नजर आ रहा है| रिसेप्शन में रेड कलर का आ मेज रखा हुआ है और ब्लैक कलर का कुर्सी लगी हुई है।

हैं बस और ट्रक आए-जाते हुए दिख रहे हैं| यह शाम का वक्त भी लग रहा है।

यहाँ एक बहुत बड़ी-सी ये भवन भवन नुमा बिल्डिंग नजर आ रही है।

यहाँ एक बैंक नजर आ रहा है| बैंक एक तल्ले पे बना हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है।

इन बच्चों के खेलने के लिए चारो तरफ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स भी दिख रही है।

यहाँ उनके हाथो में हथियार उनके हथियार भी नजर आ रहे हैं| और पीछे वॉल पे बहुत खुबसूरत नकाशी किया हुआ अ नजर आ रहा है।